बताई गई पिक्चर जन्मोत्सव से संबंधित है इसमें बच्चों बच्चे के जन्मोत्सव के लिए तैयारी की गई है।

पौधों का सीजन उगाए गए हैं।

इसका पूरा दृश्य सामने ना आने के कारण भी इसको इलाबोरेट करना--

इसमें रोटियों का अभाव है जो जो कि बहुत ही जरूरी है।

रोटी ना होना मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब है।

यह पानी किस प्रकार का है यह हमे नही है बारि बारिश का पानी है कि--

सूर्य का आगमन किस प्रकार से हैइस प्रकार प्रदर्शित किया गया है।

अंअं स्टील के गिलास रखे गए हैं।

उस टिलो को ग्लास पे रखने का एक अद्भुत--

एक बैलेंस के रूप में रखा गया है जो कि कला का--

जिसमें जिसका छत बहुत ही सुंदर--